इसके अलवा इसमें बहोत-सी चीज़ें हुवी हैं।

यहाँ पे एक सड़क है रास सड़क है जिसपे बहुत सारी गाड़ियाँ चल रहीं है लोग --

और ये जो मंडी हैं उसमें अगल अगल बहोत ही सारे शॉप हैं और कई प्रजाती के लोग मछली को खरीदने के लिए आए हैं और मछुआरे कई किस्म की मछली को लेकर के मछली बेच र --

और इधर अगल-बगल बहुत सारे लकड़ी के शव भी रखे हुए --

यहाँ पे और मशीन भी रक्खी हुई है और यहाँ से मिट्टी की कटाई हो रही है और ये कुछ पीले तरह की मिट्टी है।

बहुत सारी हरी भरी चीज़ें हैं। आसमान का सीन दिखाई रहा है। साइड में बहुत काफी बड़ा फील्ड की तरह है कुछ पेड़ भी हैं जो बहुत ज़्यादा बड़े बड़े दिख रहे हैं और यहाँ की पानी भी जो है काफी अच्छी है।

जो गर्मी के सीजन में हम लोग खाते हैं लीची लग रहा हैं जैसे रेड रेड कलर की एक थाली में रखी हुई है। लीची जो है देखने मैं काफी मीठा लग रहा है।

यह पिक्चर किसी होटेल की है जिसमे बोहत सारा टेबल्स कुर्सी लगाया हुआ है। कुछ कस्टमर्स यहाँ पे आके खाना खा रहे --

एक ऐसी बोहत ही ब्रांडेड पार्क पिक हैं जहां पे ये शायद पेड़ो वगेरा साइड में हरयाली जैसे कुछ दिखाया गया है जिसमे से गिर करके रास्ते को रखा गया है। कुछ गाड़ियां हैं कुछ लोग भी खड़े हुए हैं।